ये भी होटल है इसका ग्राउंड बहुत बनिया है| गाड़ी लगी हुई है चार- पांच गाड़ी लगी हुई है और इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है।

ये बहुत बड़ा-सा घर है| इसमें लाइट तीन छह नौ लगी हुई है।

और बहुत ही लंबा-चौड़ा कॉलेज है| इसमें विद्यार्थी आते हैं और पढ़ते हैं।

आदमी सब है एक गाड़ी लगी हुई है और एक आदमी खड़े है और अपना काम करवा रहे है।

लाइट जल रही है लाइट का रौशनी भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बड़ा बढ़िया ड्राई क्लीनर्स --

ये ऑफिस है इसमें चेयर बहुत लगे हुए हैं काउंटर लगी हुइ है दरवाजा भी है लाइट भी जल रहा है।

इ भी ऑफिस है इसमें आदमी बैठे हुए काम कर रहे हैं| चेयर लगा हुआ है बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं लाइट - उट भी जल रहा है| बहुत ही बढ़िया यह शो ऑफिस दिख रहा है ऐ_सी भी लगा हुआ है।

और आदमी रहके काम यहाँ कर रहे हैं लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं।

इसमें लोग आते हैं और काम करके फिर चले जाते हैं| बहुत ही सुंदर ये ऑफिस बनाया गया है।

ये भी झील नजर आ रहा है| बगल में बहुत घर है पीछे भी घर है हरियाली बहुत है और--

इ मार्केट का सीन है गोलंबर लग रहा है| बगल में बोर्ड लगा हुआ है और गाड़ी सब जा रहा है आ रहा है थ्री व्हीलर --